यहा पर बड़े बड़े साउंड लगे हुये है।

और उसमे पैसे रखते है बेंक में पैसे सुरक्षित रहते है आपनी जरूरत के समय हम खाते से पैसा निकाल सकते है।

मैरेज हॉल के गेट को सफ़ेद और गुलाबी परदों सजाया गया है। साथ ही साथ रंग बिरंगे फूलो से डेकोरेशन किया गया है जो देखने में बेहद खुबसूरत है।

प्लेटफॉर्म पर बड़े- बड़े पेड़ भी लगे हुए है। पेड़ काफी हरे भरे है।

यहा पर बहुत से हरे भरे पाहड़ दिख रहे है। पहाड़ो का यह नजरा दिखने में बेहद ही खुबसूरत है। पहाड़ो पर ठंडी ठंडी हवाए चलती है।

पहाड़ से एक झरना नीचे गिर रहा है झरने का पानी काफी साफ़ और ठंडा है इस झरने को दूर दूर से लोग देखने आते है।

यहाँ एक बस स्टॉप है। यहाँ पर अलग अलग रंगों की बसें खड़ी हैं।

जेसीबी के माध्यम से यहाँ जमीन में खुदाई हो रही है।

जैसे वॉशिंग मशीन फ्रिज टीवी कूलर ये सभी चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं।